उने एक टॅक्सी स्टैंड है जिसमे बहुत सारी टॅक्सीया खड़ी हुई है जोकि कुछ टॅक्सीया काले कलर की और पीले कलर की है और कुछ टॅक्सीया हरे कलर की और पीले कलर की --

सामने एक टेंट लगा हुआ है जिसके चारो तरफ फुल लगे हुए है जो की गुलाबी कलर के लगे है और पीले कलर के हरे कलर के सफ़ेद कलर के--

सामने बहुत सारी गाडिया खड़ी हुई है और कुछ स्कूटी खड़ी हुई है जोकि सफ़ेद कलर की और काले कलर की है।

एक पहाड़ है जो की पत्थरोंसे बनी हुई है इसमे बहुत सारे पत्थर है जो की काले काले कलर के है नीचे एक आदमी है जो की लाल कलर का टीशर्ट पहना हुआ है और नीचे--

सामने एक दुकान है जो की चाय कोफ़्फ़ी की दुकान है इसमे एक आदमी है जो की सोया हुआ है और वो चाय बेच रहा है और सामने एक आदमी है।

नीचे फर्श है फर्श मैं टीएल्स लगी हुई है सफ़ेद कलर की और बूरे रंग की और चरो तरफ दीवारो मैं सफ़ेद रंग का पैंट हुआ है।

एक फूल की दुकान हैं। जिसमे बहुत सारी फूल रखे हुए है जो सभी पन्निओ मैं रखे हुए है बड़े बड़े और कुछ लाल कलर के गुलाब रखे हुए है औ--

बहुत सारे लोग है जो की नीचे सफेद कलर का कपडा पेहने हुए है उपर शर्ट पेहने हुए है वह सभी बाद यंत्र बजा रहे है पीछे एक मंदिर--

सड़क है सड़क के बगल मैं एक घर है जो की दो मंजिल है उसमे नीचे बैंक खुला हुआ है जो की एच.डी.एफ़.सी. बैंक है।